नोटिस बोर्ड लगा हुआ है ऊपर में जिसमें देसी सुवाद रेस्टोरेंट एंड फ़ूड लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है बिजली के तार है। .

बहोत सारे नोट उपलब्ध है |.

ये कोई शहर है शहर में पुराने जमाने वाला बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं बहुत सारे रोशनदान है बहुत सारे दरवाजे हैं।

ढीला ढाला कपड़े पहने हुए है जिससे योगा करने में भी कम्फ़र्टेबल हो। .

क़ुतुब मीनार की तरह सजाया गया है पहले सात गिलास फिर छे गिलास फिर पांच गिलास फिर चार गिलास फेर तीन गिलास फिर दो गिलास ऐसे क्रम से सजाया गया है गिलास को--